यह दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो एक लेडिस है एक जेंट्स है।

और एक आदमी है जो बारगेनिंग कर रही है।

यह एक बेड है यहाँ बेडशीट है।